एक मजदूर व्हाइट कलर की कैप पहने खड़ा है।

पीछे कुछ सीमेंट की बोरियां रखी हुई नजर आ रही हैं।

और एक सफेद रंग की गाड़ी नजर आ रही है।

सामने एक बहोत बड़ी गनपति की मूर्ति नजर आ रही है।

इस चित्र में सामने एक काला सा गेट नजर आ रहा है।

एक रेस्टोरेंट नजर आ रहा है।

कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे हैं।

तीन युवक नीचे बैठे दिख रहे हैं पीछे एक बड़ी सी बिल्डिंग नजर आ रही है।

इस चित्र में सामने एक स्वीट शॉप नजर आ रही है।

इस चित्र में एक छोटी सी टॉय शॉप --

एक तरफ सुदर्शन लिखा हुआ दिख रहा है।

इस चित्र में एक मिडान का स्टोर नजर आ रहा है।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

चारों दुकानों के शटर बंद नजर आ रहे हैं।